एक सुंदर झुमर लगा हुआ है।

खड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं।

की फोटो दिखाई गई है जिस--

कि सजावट पिंक कलर की

कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर के--

यह फोटो किसी खेत की दिखाई गई--

है यहां भगवान दिखता है शिव--

सुंदर दिखाई दे रहा है।

रोड की फोटो दिखाई गई--

बहुत अच्छी डेकोरेशन की--